इंग्लिश में भी ट्रेंड्स लिखा हुआ है दो मंजिला शोरूम है शोरूम की लाइटें दिख रहीं हैं।

पेड़ काटने वाली एक मशीन है जिसमें पीले कलर का पेंट है उसमें हिताची लिखा हुआ है।

पेट्रोल पंप के बहार की फोटो है नीचे जमीन में पत्थर के इंट लगे हुए हैं।

दो-तीन पहाड़ की चोटियाँ हैं और गहना कोहरा सा दिख रहा है आस-पास।

उसके चकके दिख रहे हैं परछाई दिख रही है।

दरवाज़ा लगा हुआ है कांच का और कुर्सी लगी हुई है लोहे की।

दुकान के अंदर की फोटो है एक फ्रीजर दिख रहा है फ्रीजर में फ्रूटी दिख रही है।

पहाड़ दिख रहे हैं ऊंची-ऊंची चोटियां हैं पहाड़ की फैन लाइट के खंभे दिख रहे हैं बिजली के।

और कुछ छोटी मछलियां भी हैं एल.ई.डी. बल्ब दिख रहे हैं तीन एक आदमी पीछे हैं कार्टून दिख रहे हैं |

एक पतली सी नदी बह रही है पहाड़ के बीच से नदी बह रही है पेड़ हैं पेड़ की पत्तियाँ दिख रही हैं।

कुछ लोग फील्ड मे इकठ्ठा हैं घास नहीं है जमीन दिख रही है साफ।

केदारनाथ की फोटो है एक मंदिर दिख रहा है जो पत्थर का बना हुआ है सामने।

पीछे फर्श है जमीन में चप्पल उतरी हुई है।

सभी बैठी हैं हाथ में कंगन उनके।

और शटर लगा हुआ है दो-तीन दुकानें अगल-बगल हैं एक कार खड़ी है।

बसस्टैंड की फोटो है एक बस खड़ी है जिसमें विश्वनाथ सेवा लिखा हुआ है।